मस्जिद के जो होते हैं उनसे बातचीत कर रहा है। ये उनको बता रहे हैं ये। जाने क्या बात बता रहे हैं? पता नहीं।

जो आसपास के आदमी हैं इन्होंने अपनी झोपड़ियाँ दुकान बना रखी हैं नदी के गंगा जी किनारे पर। देखो एक तखत भी पड़ पड़ा है। जो लोग नहाने आते हैं वहाँ वो इन तख्त पर बैठते हैं अपने कपड़े लत्ते रखते हैं।

काफी बढ़ियां तरीके से बना हुआ है। दीवार की तरह --